वहां पे डाइनिंग टेबल है उसपे खाना भी रखा हुआ है बोटल में पानी रखा हुआ है.

काउंटर भी लगा हुआ है एक बुलू सा गेट है.

हां बैनर एक लगा हुआ है मेरी क्रिसमस का.

और असमानी कलर का नीचे दो स्कूटी और एक बैग दिख रहा हैं.

यहां पे बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसमें बैंक है एच_डी_एफ_सी बैंक है.

अ-सीलिंग है ब्राउन कलर का सामने एक सोफा है उसपे आदमी एक बैठा हुआ है.

वहां पे दो आदमी है एक झुके हुए हैं एक खरे हैं.

फॉस्युन के बोरिया भी रखा हुआ है और आशीर्वाद आटा भी रखा हुआ है एक आदमी भी बैठा हुआ है.

अनानास है अंगूर है खरबूजा है सेब है.

दो सीलिंग फैन भी लगे हुए हैं.

दो बाइक खड़ी है एक बाइक पर एक आदमी जा रहा है.

वहां पर बहुत सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है.

सामने में पर्दा है एक इधर भी सोफा है.

वहां पे बहुत सारे बरे-बरे रेक हैं उसपे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।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

ई एक का जगाह है.

और दो मैट भी बिछा हुआ है ग्रीन और एक रेड .

फ्रिज के अंदर बहुत सारे केक रखे हुए हे प्रेस्टीज भी रखे हुए हे और टॉफी भी हे पेटीज भी हे.

एक रैक भी रखा हुआ है उसमे सामान बहुत सारे हे.

इस फोटो मे बहुत सारी मछली रखा हुआ हे.

और इसमें मिठाई सीसे में रखा हुआ है.

एक आदमी खड़ा है एक उजाला शर्ट में एक कल्लू शर्ट में.